--पोताया है इसके आसपास बहुत पड़े पौध फूल पत्ती पूरा दिख रहे है खिड़की दरवाजे लोग आदमी सब दिख रहे हैं बहुत सूंदर दिखा रहा है।

यह एक खेत है इसमें बिया बोय हैं धान वाला इसमें पानी धारे हैं।

बहुत सुंदर दिख रहा है. बहुत अच्छा दिख रहा है घर घ घर और सब दिख रहा है इसमें लगता है एक बड़ा ग्राउंड इसमें खेलेंगे अभी--

ये यह एक अलमारी है इसके आगे में बुहत पेंट रखे किये हुए है बहुत डिज़निग से सजाये गए हुए है इसके आगे एक शीशा है।

यह एक दूकान है इसमें बहुत कपड़े दिख रहे है जिंस पैंट शर्ट सारी वारी सब इसमें बहुत डिजाइन दार किए हैं इसमें लाइट भी लगा है छत पंखा भी लगा हैं बहुत सुंदर दिख रहा है बहुत अच्छा दिख रहा है बहुत सुंदर दिख रहा है।

एक कुर्सी है इसको बहुत अच्छे तरह से सजाये गए है इसमें बहुत कल कला किये गए है।

यह एक घर है सफेद ईटा से भी बन रहा है अभी अच्छे तरह से नहीं बन रहा है इसमें बांस की खंभे भी दिख रहे है बहुत अच्छे तरह से लगता है डिजाइनिंग बनेगा बाकी सफेद ईटा से भी बन रहा है।